ये बुद्ध भगवान का पिक्चर प्रतिमा है इनका पूजा भी किया जाता है जो भागलपुर में स्थापित था। इनका पूजा भी किया जाता है। ये बुद्ध की जयंती भी हम लोग मनाते हैं उनका एकदम अच्छा से पूजा किया जाता है।

एगो लड़का बॉक्स लगा हुआ है चारो तरफ से लाइट लगा हुआ है।

ये बैठने में आसान होता है ये हल्का गाड़ी है एकदम।